एक वा शिंग बेसिन भी दिखाई दे रहा है।

और बूढ़ी के पास चश्मा है।

और एक जनरेटर भी दिखाई दे रहा है।

इधर में एक बड़ा सा फील्ड है।

और फूलों के पीछे में बहुत सारा जंगल है।

और लाइट बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रहा है।

और इंसान का साइड में एक पोल्स भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

और चार्जिंग स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में एक चेयर भी दिखाई दे रहा है।

इधर में बहुत सारा स्पीकर दिखाई दे रहा है।

और काला कलर का कपड़ा भी है।

और बहुत सारा चेयर भी है।

और गाड़ी के सामने में एक पाइप भी है।

और रूम में बहुत सारा सामान है।

टीना का घर भी दिखाई दे रहा है।